पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ घर दिख रहे हैं।

पेड़ दिख रहे हैं आसमान दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल साफ --

यहां मंदिर दिख रहा है मंदिर में भैरव बाबा का मंदिर है मूर्ती है।

यहां पार्क दिख रहा है जहां पेड़-पौधे दिख रहे हैं कुछ झूले हैं।

यहां पार्क दिख रहा है जिसमें --

और कैरम बोर्ड भी दिख रहा है यहां पे --

मॅट दिख रहा है जो अपने छत पे यह तीन लड़किया योगा कर रही है सुबह का टाइम है सूरज निकल रहा है।

यह ऑफिस है यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है फाईल्स रखी हुई है केबिन बना हुआ है।

जेन्ट्स है जो अपने बच्चों को --

यह किसी इवेंट का टाइम लग रहा है इसमें बहुत सारी लाइटिंग हैं बहुत सारे सोफे लगे हुए हैं कारपेट बिछा हुआ है पीछे चेयर्स लगे हुए है।

यहां मॉल है मॉल में ग्रोसरी के सामान रखे हुए हैं ट्रॉली है ट्रॉली में कुछ सामान रखा हुआ है।

और आसमान साफ दिख रहा है।